बोहोत ही बड़ी बिल्डिंग है वाईट कलर से पेंट किया गया है। रेलिंग लगी हुई है पेड़ लगे हुए --

पानी का टंकी है। डोरी में इसमें कपड़े टंगे हुए हैं आसमान में बहुत बड़ा दि --

गेट पे कांच लगा हुआ है। बहोत सारी मशीन रखी हुई है। एक बगल से शटर लगा हुआ है।

ये एक मंदिर है यहाँ पे ये साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई है दुर्गा माता की मूर्ति बनी हुई है।

यहाँ आसमान भी बहोत बड़ा दिख रहा है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं ए व्हाइट और गेरू कलर से पेंट किया हुआ है।